वो एक दांतों का क्लीनिक है।

वो एक बहुत बड़ा समंदर है।

और वहां पर एक घर भी है।

और वहां पर बहोत अंधेरा है।

पर वहां पर तीन चेयर हैं और चेयर लकड़ी के हैं।

और टेंट्स को बहोत सेफ्टी से अ रस्सियों से सेट किया गया है।

और वो लोग कुछ कर रहे है।

और वहां पर कुछ सिंगिंग का फंक्शन किया जा रहा है।

गैरेज में एक कार भी खड़ी हुई है।

कार का कलर ग्रे कलर है और वो कार रोड के ऊपर खड़ी हुई है।

वहां पर कई सारे लकड़ी के बंबू भी रखे गए हैं।

ओ एक किराने दुकान है और वहां पर बहोत सारे किराने के सामान है और --

और वहां पर बहोत सारे फूल हैं।

और वहां पर एक हार बनाया गया है।

और वहां पर पिला रंग से उसे रंगा गया है।

और वहां ओ पहाड़ बहोत सुंदर लग रहे हैं।

और वहां पर एक कंप्यूटर भी है जिस पर एक फूलों का हार लगाया गया है।

यहां पर एक भी है।

वेलकम दा स्मार्ट वर्कशॉप वहां पर एक लाल कलर का बोर्ड लगाया गया है।

और वहां पर नीले कलर के तगड़ भी रखे गए हैं।

और वहां पर दो गाड़ियां खड़ी हुई है।

पर ओ वहां पर बहोत सारे कंप्यूटर्स है --

और वहां पर एक औरत भी खड़ी हुई है।

बस के अंदर कई कलर्स के बलूंस है और उसे ऑरेंज कलर के फूलों से सजाया गया है।

ओ एक घर है और घर बहुत नया लग रहा है।

और वहां पर कई सारे मशीनें भी नजर आ रही हैं।

वो एक नदी है और वहां पर बहुत सारा पानी है।

और वहां पर कई सारे फोटोस भी लगाए गए हैं।

और आदमी काम कर रहा है।